बच्चे लोग रिंग्स के ऊपर अ जम्पिंग करने वाला गेम खेल रहे हैं।

कामकर रहेहैं बर्तन का यहाँ डब्बे वगेरह बास्केट वगेरह प्लेट--

वहां की टीचर एक सिस्टर्स है जो ये सब चेक कर रही है और बच्चों को करवा रही है।

कोई कंपनी का जे_ पी_ सी_ पी_ एल का यहाँ बोहोत सारी दुकाने लगी हुयी है जैसे टर्टल --

चीजे ले रहा है वह बोहोत सारे चीजे उपलब्ध है उसके बाजुमें भी एक डेली नीड्स टाईप की दुकान भी है और एक झाड़ भी है।

यह नज़ारा कितना सुंदर है यहाँ बोहोत सारे झाड़ है.

और नदी है लोग यहाँ पे शिपिंग कर रहे है.

और उधर एक लेडीज जेंट्स दोनों उठ रहे है और यहाँ लोग मछली खरीदने के लिए आये हुए है.

मंदिर है श्री दादागाळी इसके अंदर एक पंडित बैठा हुआ है।

उसके अकॉर्डिंग से रिलेटेड है.

और वह पे वो लोग पुरे काम कर रहे है.

यहाँ पर कलाम हॉल है यहाँ पे बोहोत सारे लोग खड़े है।

तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट यहाँ तंदूर की चाय बनती है।

यहाँ पर योगा कराई जाती है उस योगावाली का नाम है --

यहाँ पे बोहोत अच्छा अटमॉस्पीअर है जैसे पूरा खुला मैदान है वहा पे योगा करवाई जा रही है।

और उनका कोच उनको गाइड कर रहा है कैसे एक्सरसाइज करना है।